दुकान अह साफ दिखाई नहीं दे रही है अंधेरा है लेकिन ऊपर बोर्ड दिख रहा है जिस पर लिखा है--

इस तस्वीर में एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

रोड के दोनों तरफ जो है वो घर बने हुए हैं।

फ्लावर्स टाइप भी है और सिंपल भी है।

इस तस्वीर में एक झरना दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक आदमी आग जलाता हुआ दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी ने लाल रंग की जैकेट डाली हुई है सिर पर टोपी लगाई हुई है।

कुछ बच्चे जो है वो हाथ ऊपर किए हुए--

इस तस्वीर में एक आदमी और एक औरत--

यह तस्वीर एक रेस्टोरेंट की है।

ऊपर एक फैन लगा हुआ है।

और कुछ लोग जो है वो चेयर पर बैठे हुए हैं लाइट्स लगी हुई हैं।

पेड़ के पास नीचे घास लगी हुई है।

एक तरफ दुकान में कई सारे कपड़े टंगे हुए हैं।

दोनों तरफ जो है वो पेड़ लगे हुए हैं।

तस्वीर में एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।